यह भी एक जिम सेंटर है जो की बहुत सुन्दर दिख रहा है और बगल में पार्किंग टाइप भी दिख रहा है।

और यहाँ लोग जिम करने आते है यहाँ से लोग बहुत खुश है।

जो भी इसको बनाया है बहुत सुंदर बनाया है और अच्छा दिख भी रहा हैं बगल में रास्ता भी हैं।